इसमें घास दिख रही है लाइट जल रही है।

इसमें घास दिख रही है।

औरतें दिख रही है चप्पले दिख रही हैं मोटरसाइकिल दिख रही है लाइट जल रही है।